एक आदमी गेट पर दिखाई दे रहा है।

कोई बहुत बड़ा हरा भरा फील दिखाई दे रहा है।

फील्ड के उस तरफ मकान दिखाई दे रहा है।

इधर कोई बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है।

सामने कोई प्रशासनिक हल दिखाई दे रहा है।

एकाद लोग पुलिस की वर्दी में भी दिखाई दे रहे हैं।

मंदिर का गुंबज ऊपर दिखाई दे रहा है।

सामने दवा की दुकान दिखाई दे रही है।

रेक में बहुत सारी दवाएं लगी हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक मैदान दिखाई दे रहा है।

इसमें काफी लोग खड़े घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऐसा लगता है जैसे कोई बस स्टैंड हो।

पर्दा का हॉल बना हुआ दिखाई दे रहा है जो लगता है कि कोई बियाह-शादी का भवन तैयार किया गया हो सामने बहुत सारी कुर्सियाँ भी दिखाई दे रही है।

किसी होटल का हॉल दिखाई दे रहा है।

सामने एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

सामने शेविंग पूल दिखाई दे रहा है।

जिसमें कुछ रेग पर हैमलेट वगैरह दिखाई दे रहा है।

सामने होटल दिखाई दे रहा है।

रास्ते के दोनों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ -पौधा भी दिखाई दे रहा है।

हा ये सामने एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही है।

सामनेएक होटल सा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे उधर सामान दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक हॉल दिखाई दे रहा है।

सामने पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में बच्चों की खेलने और की सामग्री दिखाई दे रही है जिसमें बच्चे खेलते हैं।

कोई छोटा सा पार्क दिखाई दे रहा है।

लेकिन उसके बाद कोई अस्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है।

सामने एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

ऐसा लगता है जैसे सामने कोई शादी भवन दिखाई दे रहा हैं।

जिसमें सुधा का बोर्ड लगा हुआ है।

और कोई कस्टमर दिखाई नहीं दे रहा--

कोई मार्केट था दिखाई दे रहा है जिसमें काफी लोग--

जो काफी हरियाली दिखाई दे रही है।

पार्क के उस साइड मकान दिखाई दे रहा है।

उसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई होटल का बाररूम हो।

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान देखने से ऐसा हो लगता है --

जैसे कोई टीवी का दुकान हो।

इलेक्ट्रॉनिक सामान दिखाई दे रहा है।

सामने बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है।

सामने दो चार दस लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

सामने रोड दिखाई दे रहा है।

दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है।

मकान के बगल से एक गेट दिखाई दे रहा है।

रास्ता के बगल में पेड़ भी दिखाई दे रहा है और एक बाउंड्री वॉल भी दिखाई दे रहा है।

हॉल पे चार पांच लड़के खड़े दिखाई दे रहे हैं।

उनके सामने टेबल लगी हुई है।

इस साइड कुछ खड़े लोग दिखाई दे रहे हैं।

सामने कोई ऑफिस दिखाई दे रहा है।

और काउंटर भी दिखाई दे रहा है।

सब बहुत बड़ा होल दिखाई दे रहा है।